की बहुत हरे हरे दिख रहे है और टमाटर आलू भी रखा गया है पीछे मे जाली दिखाई दे रहे हैं।

एन सी मॉल अपनी पसंद और यहां पर चित्र भी लगाया गया हैं नीचे में बहोत सारे कपड़े टांगे गए--

आस पास छोटे छोटे पेड़ पौधे लगाए गए हैं यहां पे बोर्ड पर रेस्टोरेंट भी लिखा है जो कि झालर से झल रहा है।

बगल में एक शटर दिखाई दे रहा है जोकि अभी बंद है।

यहां पे गुलाबी तथा पीला तथा हरा कलर के पेड़ पौधे फूल लगाए गए है यहां पे बहुत सारे बड़े छोटे फूल पौधे दिखाई दे रहे है।

यहां पे रंग बिरंगी मिठाई लगाए रखी गई हैं जैसी कि बर्फी लड्डू पेड़ा रसगुल्ला काला जामुन।

यहाँ पे ऊपर मे आसमान बादल किया हुआ है और यहाँ पे मन्दिर के नीचे पाइप लगाया गया है जो कि पीला कलर का है।

पे बहुत सारे सामान रखे गए हैं ये एक दुकान का अंदर का दृश्य है अंदर में एक तारजू भी रखा गया है।

बाहर में एक बोर्ड लगा हुआ है वो बोर्ड पे लिखा भी है चंदन वस्त्रालय।

रंग बिरंगे फूल का माला बनाकर टांगा गया है जैसे कि पीला कलर के फूल का और चरक कलर का फूल का और लाल कलर का फूल का गुलाबी कलर का फूल का।

यहा पे एक एक आदमी मसीन चला रहा है जो कि ह तार लगी हुई है जो कि लाल कलर की है।

आसपास भी घर दुरा दिखाई दे रहे हैं और यहां पे चारों तरफ से जाली मारा गया है।

यहा पे तीन चम्मच दिखाई दे रहे है और यहां पे एक प्लेट मे रखा गया है जो कि प्लेट का सफेद कलर है।

यहां पे एक हाल को सफेद कलर से पेंट किया गया है। यहां पर नीचे में दरी बिछाया गया जोकि बहुत चिकन दिखाई दे रहा है। आसपास खिड़कियां दिखाई दे रहे हैं।

बगल में बाल्टी दिखाई दे रही है एक छोटा सा बगल में पंडाल दिखाई दे रहा है।

यहां पे आस पास जाली लगी हुई है जाली के अंदर बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं और गमले में फूल भी लगाए गए हैं।

इनी के नीचे वाले में करकट लगा हुआ है नीचे मे बहुत सारा सामान दिख रहे है ये शायद कपड़ा दुकान का दृश्य लग रहा है बगल मे एक बोर्ड भी लगा है।

और पंडाल में एक लाइट भी लगाया गया है जो कि लाइट सफेद कलर का है नीचे में बहुत सारे आदमी दिखाई दे रहे हैं।

ये एक पार्क बगीचा का अंदर का दृश्य है जहा पे यहां बहुत सारे फील्ड दिख रहे हैं और घास भी लगाया गए है।

आस पास नारियल के पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं और यहां पे नीचे में बहुत सारे हल्दी का पेड़ पौधा दिखाई दे रहा है फूल लगाए गए हैं।